जहां में सफेद कलर का प्लेन है।

उसका सामने बरा सा बिल्डिंग है। ऑरेंज और रेड कलर का ऊपर में टीना लगा के हैं।

उसका आसपास में भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

यहां में दो वर्कर काम कर रहे हैं।

यहां में मेला लगा हुआ है।

ये फोटो में हमको बहुत बड़ा सा लाल कलर का स्ट्रक्चर बनाके दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको एक फंक्शन दिखाई दे रहा है जहां में जो बहुत ज्यादा लड़की लोग अलग अलग कलरफुल कपड़ा पहन के नाच रहा है।

उधर में एक ठो दुकानदार है जो कि बैडमिंटन का रैकेट पकड़ के है।

ये जो थोड़ा माउंटेनस एरिया है।

और ये होमस्टे के बाहर में जो गारी सब रखे हैं।

उसका सामने और एक काला रंग का कार भी है।

खिड़की है और उसका सामने पर्दा लगा के है।

अंदर में बहुत ज्यादा सामान सब बेच रहे हैं।

बाहर में कार्टून में भी रख के है सामान सब।

काला रंग का दो ठो बत्तख है।

ऊपर मे आसमान भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से।

फिर यहां में एक ठो कस्टमर आ के हैं खड़ा हो के ब्लू शर्ट पहन के।

पेड़ इंसान लोग चलने के लिए रस्ता भी हैं यहां में।

बीच में एक खाली मैदान है बरा बरा पेर है।

और ऊपर में जो येलो पिंक और येलो कलर से कपड़ा से डिजाइन बनाके है।

और यहाँ में जो राखी जो पैकेट का अंदर भी है।

ये फोटो में हमको एक चर्च दिखाई दे रहा है।

पीछे बड़ा बड़ा पेड़ है।

हमें बहुत ज्यादा स्टील चेयर रखे हैं।

पीछे में लिखे हैं बाइकिंग ब्रदर करके कुछ।

बीच में ग्राउंड है।

एक गाड़ी का ऊपर एक कपड़ा रखे हैं।

बस में बहुत ज्यादा खिड़की है।

ये समान सब पे रख के है कोई कोई लोग खड़ा हो के है कोई कोई लोग बैठ के है।

ये फोटो में हमको बहुत ज्यादा अन्य लोग एक साथ इकट्ठा हो के दिखाई दे रहा है।

जो एक रूम के अंदर है वो रूम में व्हाइट बोर्ड रखे हैं।

टेबल रख के है फिर आगे में एक बैनर चिपका के है।